उसके बगल में एक पोस्टर लगा हुआ है जिस में पतंजलि टेस्टी नमक दावा लिखा हुआ है उसके अगल-बगल काफी सारे गुब्बारे हैं जो लाल कलर के है और ने नीले कलर के हैं।

एक दुकान है दुकान में सफेद कलर का पेंट है उसके ऊपर काफी सारे पोस्टर लगे हुए नीचे से काफी लोग भी खड़े है पीछे दुकान में काफी सारा सामान है।

काँच लगा हुआ है उसके पीछे काफी सारे सामान भी रखी हुई है नीचे साईड टाईल्स हुआ है जो ग्रे कलर का है उसके बगल में एक और इंसान जो कुर्सी में बैठा हुआ ब्लैक कलर का लाल कलर का कपड़ा शर्ट पहना हुआ है।